और रोड भी एक रोड दिखाई दे रही है।

और दो तीन महिलाये बैठे हुए है बातचित कर रहे है और एक महिला--

नदी दिखाई दे रही है और एक नांव भी दिखाई दे रही है और एक लड़का पत्थर पे बैठे हुए हैं ।

तरबूज रखे हुए है आम का रंग पीला है सेवफल का रंग लाल है।

और बस का नंबर सी जी टेन ए एक्स ज़ीरो सिक्स फाइव टू है।

इस इमेज मे कुछ गाय दिखाई दे रही है वो वो बंधी हुई है।

इस इमेज मे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है और कुछ बादल भी दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज मे एक सेलून की दुकान दिखाई दे रही है।

एक का रंग लाल है एक का रंग पीला है एक का रंग नीला है।

नदी भी दिख रही है और एक नाव भी दिख--

इस इमेज मे चार पाँच लोग दिख रहे है वे घर बनाने का काम कर रहे है एक आदमी सर पर--

और दो ए_टी_एम मशीन लगी हुई हैं ।

और दो खंभे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

रंग की शर्ट पहने हुए है और एक रार रंग की मशीन दिखाई दे रही है।